नीचे हमे कुछ गिट्टी सी पड़ी हुई दिख रहीं फर्श में सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी दिख रही है और साइकिल भी खड़ी हुई दिख रहीं हैं यहां--

कोई घर से की फोटो देख रही है ये यहां पर एक बेकार सी अलमारी रखी हुई दिख रही है ये तख्त सा दिख रहा है छोटा सा स्टूल टाइप का।

डिजाइन के देख रहे ब्लैक कलर का ब्राऊन कलर का पिंक कलर का है।

नीचे हमें दो जोड़ी चप्पल रखी हुई दिख रही है। जूती दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर की है ब्लैक कलर की है साइड में भी हमें--

सामने कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है रेड कलर की चेयर है और--

के फोटो है यहां पर ये कुछ होटल है और होटल पे यहां पे कुछ लिखा भी हुआ है पोस्टर लगा--

झूले की पिक है ये ये झूले में बैठने बहोत मजा आता है इसमें बहुत सारे रंग बिरंगी--

बहुत सुंदर सजावट दिख रही है बैलून लगे हुए हैं रेड और येलो कलर के।

पंख लगा हुआ दिख रहा है ऊपर जोकि सफेद कलर का है बहोत सारे टीन सेट दिख रहे--

और दो तीन आदमी हमें यहां खड़े हुए दिख रहे हैं एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है जो ब्लू कलर का फोन से बात कर रहा है ऊपर हमें टीन सेट दिखाई दे रहा--

यहाँ पर हमें एक गाड़ी दिख रही है जोकी ब्लू कलर की है जीस पर लिखा है स्पोर्ट्स एफ ट्वेंटी और यहाँ बहोत सारे आदमी दिख रहे है।

और पीछे हमें टीन के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की हमें दीवाल भी दिखाई दे रही हैं।

यह जो पंखा कूलर में जो अंदर लगी रहती है ना पंखी वो पंखी रखी हुई है यह बहुत सारी रखी हुई है एक के पीछे एक राखी।--

ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है और ऊपर बहोत सारे हम बल्ब दिखाई दे रहे हैं हमें ड्रामे में दिखाई दे रहे हैं एक रेड कलर की--

ब्लैक कलर की है सामने दो कंटेनर रखे दिख रहे हैं एक कंटेनर पे एक लोटा रखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें दो ट्रक खड़े हुए सामने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे खोका दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पान दिख रहे है और ये गार्डन सा दिख रहा है और इसमें बहुत सारी हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही फूल सा दिखाई दे रहा है खंभे दिखाई दे रहे है।